के बाजू में बहोत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहोत बड़ा घने जंगल--

के बाजू में एक दुकान है वह खुला हुआ है जो की शादी एवं बाटी के लिए है।

एक रिक्शा है जो एक ही जगह पे रुकी हुई है।

बैंड बाजे वाले लोग बैंड बाजा बजाते हुए नजर आ रहे है कुछ लोग नाच करते हुए--

उसके बाद में बहोत सारे लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

गड़ाने के काम चल रहा है यानी मकान बनाने का कुछ लोग--

मकान है और बहोत बड़ा ।

जो कि बहोत सारे सामान उसके अंदर पड़ी है।

उस दुकान मे बहोत सारे सामान बिकते हैं।

की वीडियो में बहुत सारा लोग बैठल बा।

और इसमें बहोत सारे रंग बिरंगे फुल दिख रहे हैं।